और एक लड़की है जो अ कुछ शील्ड दे रही है और कुछ अगल-बगल लड़के आदमी इ डॉक्टरे खड़े हुए है।

कुछ हारमोनियम हारमोनियम रखा हुआ है और कुछ बेग भी --